थोड़ी ही देर कुछ गमने रखे हुए हैं चर्च के बगल में दो--

बहोत सारा समान टंगा हुआ है एक रिक्शे वाला गुजर रहा है।

थोड़ी ही दूर पर एक और फ्रिज है सामने लकड़ी के टेबल पे किंडर जॉय हैं।

सामने दो कुर्सी एक टेबल रखा है दूसरी तरफ एक कुर्सी है दीवाल में वॉलपेपर लगा हुआ--

ये एक खाने की जगह है। जहाँ सामने एक फ्रिज है। फ्रिज के अंदर बहोत सारी कोल्ड ड्रिंक रखी है।

ऊपर दिवाल पे अमूल का बोर्ड लगा हुआ है गुब्बारों से सजाया गया है।

ये एक बच्चा है। बच्चे ने हल्के नीले रंग के कपड़े पहने हैं। गले में लाल रंग का धागा है।

एक टेबल खाली पड़ा है जिसके तरफ कुर्सियां रखी हुई है पीछे पानी बह रहा है थोड़ी ही दूर पे--

दिवाल के ऊपर ए_सी लगा है थोड़ी ही दूर पे एक फैन हैं नीचे एक्सरसाइज करने वाली बैंच हैं।

जमीन को फूलों से सजाया गया है चारों तरफ फूल टंगे हुए हैं आर्टिफिशियल फूल रखे हैं।

दूसरी दीवार पे एक ओम का निशान है ओम के निशान के नीचे एक खिड़की है।

ये केंद्रीय विद्यालय की बिल्डिंग है बिल्डिंग पीले रंग की है।